सारे जड़े यहाँ कबूतर भी दिखाई दे रहे हे जो काले कलर का कबूतर दिखाई दे रहा हे कुछ आसमान नहीं दिखाई दे रहा है रात--

यहाँ पर खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है ला-- सफेद कलर की लग रही है ये बहुत अच्छी नीला आस--